ये चित्र मा हम त एक बड़ू पुल वगैहरा दिखेण लग्युं जा पर बहोत सारू पाणी छन यमा हम ता बहोत सारा बड़ा बड़ा बैरवानि मणछारा और कुछ छोटा छोटा नौनिया छिन दिखेण लग्याँ।

पैथर हमते एक बड़ो गेट दिखेण लग्युं जैका ओर पोर हमते भोत सारा रंगबिरंगी गुब्बारा दिखेण लगयां अर कुछ प्लास्टिक का फूल फाल भी दिखेण लगयां अर पैथर एक गेट भी।

यखम हम्थे एक बडू बोर्ड सी दिख्याणु लग्युं जखा हम्थे एक बड़ी ईमारत दिख्याणी लगीं इ दिख्याणु से लगदु अभी बनने से लगीं याणा हम्थे कुछ खम्बा और कुछ डाला भी छिन दिख्याणा लाग्यां।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ी इमारत छ दिखेण लगीं जू दिखेण मा एक मंदिर छ लगणू।

जे चित्र मा हम तें दुई मंडस्यारा दिखेण लग्यां जु एक दुकानि कर का भैरम खड़ा छन होयां यूं का पैथर एक कांच की दिवार कर छा।